मंदिर की छतों पे बहुत सारी जाले भी लटक रहे हैं।

यहाँ मौसम भी बहुत शांत है।

वहीं घास का सपाट मैदान है। इसके बीच में एक छोटा-सा जलाशय भी मौजूद है।

यह दृश्य किसी बड़ी सी झील तथा नदी का नजर आता है जिसके किनारो पर बहुत सारे लोग मौजूद दिखाई दे रहे हैं।

और तथा बहोत सारे जंगली जानवरों की मूर्तियां बनी हुई है जिनके ऊपर बहुत सारे लोग खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में हम देख पा रहे हैं यह एक कमरा है इसकी दीवारें सफ़ेद रंग की है यहाँ छत पर --

जिस पर बहोत सारे लैपटॉप तथा और भी यंत्र रखे हुए हैं यहाँ पर कुछ और भी लोग खड़े हुए हैं।

इस फोटो में हम देख पा रहे है यहाँ एक बहुत ही बड़ा सा मैदान है।

दृशं में हम देख पा रहे हैं। यहाँ एक सड़क के किनारे एक बहुत बड़ी सी इमारत है। देखने मात्र से यह प्रतीत होता है।

बहुत सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं जहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं वहाँ लोग गाड़ी की धुलाई कर रहें हैं।

नदी के उस पार बहोत ही बड़े-बड़े पहाड़ तथा पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं और यहाँ मौसम भी बहोत सुहाना लग रहा है।

यहाँ पर एक नीले रंग की इमारत भी है जो दो मंजिला है वही पास में उसके बगल में एक और नीले रंग की इमारत है जो चार मंजिला है।

इस में हम ये साफ देख सकते हैं की यहाँ पर एक मोबाइल टॉवर है जिस पर बहोत सारी चिड़ियां बैठी हुई हैं।

तथा मोबाइल टावर के ऊपर बहुत सारी मशीने तारे एवं विधिं विभिन्न-विभिन्न प्रकार के यंत्र भी लगे हुए हैं। वहीं मोबाइल टावर के ठीक पीछे --

एक बिजली का खंभा भी है जिसमें से तीन तारे निकल रही है वही आसमान में बदल भी छाए हुए हैं।

तथा दूसरी और बोहोत सारी झाड़ियाँ और बोहोत सारे पेड़ भी नजर में आ रहे हैं। आसमान भी बोहोत साफ नजर आ रहा है।

जो हरे रंग का पुता हुआ है।

इस फोटो में हम ये देख पा रहे हैं यह एक मकान का दृश्य है जहां पर मकान के ऊपर शटरिंग का कार्य चल रहा है।

इस फोटो में दिखाया गया है की यह एक बड़ा सा हॉल है जिसकी दीवारे हरे रंग की है। इस हॉल में बहोत सारे स्कूली बच्चे बैठे हुए हैं।

इसके ठीक बगल में ऐसे ही और भी कारे खड़ी है तथा इसके पीछे झाड़ियो के पीछे पाइप भी है।

एक शटर भी लगा हुआ है शटर के अंदर एक मेज है जिस पर मोबाइल शॉप लिखा हुआ है।

के बगल में कुछ छोटे-छोटे पत्थर के टुकड़े भी रखे हुए है और उसके बगल में एक पानी का जलाशय भी मौजूद है।

इस द्रश्य में हम ये देख पा रहे हैं की यहाँ पर एक नए कैफ़े का उद्घाटन हो रहा है जहाँ पर विभिन्न-विभिन्न प्रकार के --

दो लड़कियां भी खड़ी हैं जो फ़ोन ले कर सेल्फी ले रही है। वहीं पीछे एक युवक गाड़ी पर भी मौजूद दिखाई पड़ रहा है।